पाँच खम्बे लगे हुए हैं और इस रेता में तीन बॉय पड़े हुए हैं और --

जैसा आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक मुर्गी है।

बहोत घर है कुछ लोग दिख रहे हैं।

जो कि दो कश्तियां है और यहां पर पानी के ऊपर --

यह एक दुकान है जिसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है | उसके ऊपर लिखा हुआ है चंपारण फास्ट फूड लिखा हुआ है |

अनार हैं है और भी बहुत सारी चीज है जो दिख रहे है और यहाँ पे एक साइकिल खड़ी हुई है।